कुछ लाइट जल रही है।

मैं देख पा रही हूं।

मैं देख पा रही हूं।

कुछ हरियाली दिख रही है।